मैदान मे एक महिला साडी पहने हुए भी दिखाई दे रही है।

टायरों को एक के ऊपर एक रखा गया है।

रोड पर बहुत सारे वाहन चल रहे हैं एवं लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा सा हाईवा भी खड़ा है एवं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं रिक्शा भी खड़ा है।

स्कूल में एक बड़ा सा स्टेज है जिस पर एक नीले रंग का पोडियम रखा हुआ है।

पीली रंग की बस भी दिखाई दे रही हैं।

कमरे की दीवारों को सफेद रंग से रंगा गया है एवं बहुत सारे लाइटे भी लगाई गई है एवं एक सफेद रंग का सीलिंग फैन भी दिखाई दे रहा है।

एवं चित्र में दो पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।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

टायरों पर अलग अलग पैटर्न बना दिखाई दे रहा है।

दिखाई गई छवि में एक स्कूल परिषद का दृश्य दिखाया गया है।

स्कूल की इमारत को हरे रंग से रंगा आ गया है स्कूल के बाहर एक छोटा सा स्टेज भी दिखाई दे रहा है।

आस पास बहोत सारे पहाड़ एवं पहाड़ पेड़ों से ढके हुए भी दिखाई दे रहें है।

दिखाए गए दृश्य में एक छोटा सा पंडाल लिखाया गया है।

जिन्होंने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं।

दुकान के बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया है।

इसमें ए टू जेड मेगा स्टोर लिखा गया है।

दुकान के बाहर सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं और दुकान के अंदर एक नीले रंग का सोफा सेट भी पड़ा हुआ है।

मछलियों का आकार अलग अलग है लेकिन उनका रंग और रूप एक सा है।

साइन बोर्ड पर सफेद रंग कि रोशनी भी जल रही है।

स्टेज पे गुब्बारे भी लगाए है।